अच्छा लग रहा है| ये फोटो बहोत ज्यादा अच्छा आया हुआ है जोकि सामने लड़का खड़ा--

ये आसमान बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। फोटो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है जो कि लड़का खड़ा है बहुत अच्छा लग रहा है फोटो अच्छा लग रहा है।